पैसा निकालना अच्छा लगता है यहाँ पैसा काफी सुरक्षित रहता है।

यह शोरूम में काफी अच्छी लाइटिंग लगाईं गयी है।

निचे वर्कर लोग रहते हैं शोरूम में |

यह साइकिल ठीक करता है।

यह पास में यह खेलने का आप और डाउन खेल खेलते हैं माना --

लोग यहाँ पर मिठाई समोसा आदि चीज़े लेते हैं और खाते हैं यहाँ पर रोजाना --

और काफी सुंदर सब मंदिर एक मंदिर बना हुआ है। दूसरा मंदिर में काम चल रहा है।

यह एक टोटो शोरूम है।

यहाँ लोग गर्मियां दिनों में आकर कोल्डड्रिंक वाटर खोल लेते हैं और पीते हैं यह दुकान काफी अच्छा है।

बकरियाँ है और यह खस्सी है इसे लोग अपने घर पे पालते पोसते है।